जैसे कि मैं देख सकता हूं यह एक--

जैसे की मैं देख सकता हूं यहां पर पानी भी भरा हुआ है।